यहां पे दो बड़े बड़े खिड़कियां हैं।

और यहां पे एक बड़ा दरवाजा भी है।

वा पे फूले भी बनी हुई है पेंट की।

और सामने सोफे बीछे हुए है।

उसके सामने स्टेज लगी हुई है।

यहाँ पे एक खाट भी रखी उ खड़ी हुई है।

बराबर में एक बाइक खड़ी हुई है और एक गाड़ी खड़ी--

और ऊपर ट्यूबलाइटे लगी हुई है।

यहां पे गेंदे के फूल की माला रखी हुई है।

और ऊपर लाइटें लगी हुई है और यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं।

और यहां पे पेड़ भी है ऊपर पत्थरों के ऊपर।

यहां पे दो व्यक्ति बैठी हुए है।

मैरून कलर के भी रखे हुए हैं।

और यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

सारी लकड़ी के बने हुए है।

यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पे।

तस्वीरे लगी हुई है ऊपर।

और साइड में कुर्सियां भी हैं।

वहां पे एक गार्डन ही है।

ये एक स्विमिंग पूल है।

यहाँ पे बहोत बड़े बड़े पत्थर भी है।